यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है इसका नाम भगवती ढाबा रेस्टोरेंट है।

कुछ बच्चे खेल में लाल कलर के स्वेटर पहने हुए हैं।

यहां पे बहुत सारी लड़की भी दिखाई दे रही है जो कि रेड स्वेटर पहने हुई है और बहुत सारे पेड़ हैं ।

बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे है और बगल में बहुत सारे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे--

पे एक द्वार है जिसके और एक गेट लगी हुई है जिनका कलर बला ब्राउन कलर का है।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

यहां पे बहुत सारे दूल्हे का स मुकुट दिखाई द दे रहे हैं।

यह एक ए_टी_म का दृश्य है जिसका नाम स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

एक महिला आते हुए प्रतीत हो रही है जिसके कपड़े का रंग व्हाइट है।

यहां पे एक आंटी जाते हुए दिखाई दे रही है जो की साड़ी पहनी हुई है।

इनका टी_शर्ट कलर ग्रीन है और लड़के का टी_शर्ट का कलर वाइट है।

यह बहोत सारे पोस्टर का दृश्य हैं जहाँ पे आधार कार्ड का पोस्टर लगा हुआ हैं।